create surfaces पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: अणु के दिखने वाले गुण
partial charge के साथ परमाणुओं को label करना
van der waals surface बनाना
electrostatic potential energies के अनुसार surface को रंग करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux os version 1404
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको avogadro interface से परिचित होना चाहिए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
यहाँ मैंने avogadro window खोल ली है
insert fragment library से butane का अणु प्रविष्ट करें
build menu पर फिर insert> fragment पर click करें
alkanes folder को खोलने के लिए double click करें butane cml चुनें
insert button पर click करें
dialog box बंद करें
panel पर nbutane का model दिखता है
select menu से select none विकल्प उपयोग करके चयन को clear करें
अब अणु के मॉलिक्यूलर properties आणविक गुण दिखाते हैं
view menu पर click करें properties विकल्प चुनें
submenu से molecule properties पर click करें
molecule properties window कुछ जानकारी के साथ खुलती है जैसे
window बंद करने के लिए ok पर click करें
उसी प्रकार atom properties देखने के लिए properties menu से atom properties विकल्प पर click करें
अणु में प्रत्येक परमाणु के लिए कुछ गुणों की values के साथ एक सूची खुलती है जैसे element type valence formal charge आदि
dialog box बंद करें
सूची से अन्य गुणों जैसे angle torsion और conformer को खोजें
अब partial charge के साथ अणु में परमाणुओं को label करना सीखते हैं
display settings पर click करें: display types सूची से label के सामने वाला box check करें
label check box के दायीं तरफ spanner symbol पर click करें
label settings window खुलती है
atom labels text drop down से partial charge विकल्प पर click करें अब अणु में सारे परमाणु partial charge से labels होते हैं
partial charge distribution carbon परमाणुओं की reactivity का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है
inductive effect को partial charge के साथ परमाणुओं को लेबल करके समझाया जा सकता है
hydrogen को chlorine से बदलें carbon chain के साथ partial charge की value में बदलाव पर ध्यान दें
inductive effect के कारण कार्बन्सक्लोरीन के पास ज़्यादा positive हो जाता है
हमारे पास bonds को label करने का एक विकल्प भी है bond labels text box पर click करें
dropdown में bonds को label करने के लिए विकल्प हैं
bond length पर click करें सभी bonds के लिए bond lengths panel पर दिखती हैं
labels का रंग बदलने के लिए रंग से भरे हुए box पर click करें
select atoms label color window से वो रंग चुनें ok button पर click करें
हम x y और z दिशाओं में labels shift कर सकते हैं
label shift menu में increment or decrement buttons पर click करें
avogadro का एक अन्य सबसे उपयोगी विशेषता है कि इसमें surfaces बनाने की क्षमता है
extensions menu में surfaces बनाने के लिए विकल्प उपलब्ध है
extensions menu पर click करें फिर create surfaces विकल्प पर click करें
screen पर create surface dialog box खुलता है
surface type drop down में दो विकल्प हैं: van der waals और electrostatic potential
electrostatic potential surfacesavogadro में अब तक समर्थित नहीं हैं
van der waals विकल्प चुनें color by drop down में nothing चुनें
resolution को medium करें
iso value को 0 करें calculate button पर click करें
dialog box बंद करें
panel पर van der waals surface दिखता है
van der waals surface surface का एक प्रदर्शन है जिससे एक अणु दूसरे अणु के साथ पारस्परिक व्यवहार करता है
surface की settings बदलने के लिए surface के तत्स्थानी spanner symbol पर click करें
एक surface setting dialog box खुलता है opacity को समायोजित करने के लिए slider को drag करें
render drop down में चुनने के लिए भिन्नभिन्न प्रदर्शित विकल्प हैं जैसे: fill lines और points
default विकल्प fill है
surface का रंग बदलने के लिए positive विकल्प के आगे रंग से भरे box पर click करें
रंग पर click करके बुनियादी रंग chart से रंग का चयन करें ok button पर click करें
create surface window के आगे: color by dropdown से electrostatic potential चुनें
resolution को medium करें iso value को 002 करें
कम iso value सेट करना अच्छी surface देता है
calculate button पर click करें
panel पर हम परमाणुओं की electrostatic potential values के आधार पर 1chloro butane की रंगीन surface देखते हैं
electrostatic potential surface अणु का charge distributions दिखाता है
वे अणुओं के व्यवहार का अनुमान लगाने में भी उपयोग किये जाते हैं
default रूप से electronegativity के उच्चतम क्षेत्र लाल रंग में और निम्नतम क्षेत्र नीले में हैं
यहाँ electrostatic potential surfaces के साथ अणुओं के अधिक उदाहरण हैं
aniline और cyclohexylamine
cyclohexylamine के nitrogen पर electron डेंसिटीaniline की तुलना में ज़्यादा स्थानीय है
अतः cyclohexylamine मज़बूत base है
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा: अणु के गुणों को देखना
partial charge के साथ परमाणुओं को label करना
van der waals surface बनाना
electrostatic potential energies के आधार पर surface को रंग करना
assignment में: electrostatic potential surface उपयोग करके acetaldehyde और formamide की reactivity प्रतिक्रिया की तुलना करें
partial charge के साथ परमाणुओं को label करें
आपका पूरा assignment इस तरह दिखना चाहिए
लाल रंग में negative ऋणात्मक charge acetaldehyde के oxygen परमाणु पर ज़्यादा स्थानीय है
formamide में negative charge ज़्यादा गतिमान है
अतः acetaldehydeformamide से ज़्यादा reactive है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
please contact us हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह tutorial जया द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद